यह फोटो एक बहुत बड़े बिल्डिंग की है जिसमें कई अपार्टमेंट हैं इसमे ढेर सारे किरायेदार रहते होंगे किराया ले कर और सारे अपार्टमेंट्स के आगे एक बालकनी दिखाई दे रही है।

यहां कालीसफेद और लाल मछलियां भी हैं ग्राहक इन मछलियों को खरीद रहे हैं। और घर पे जाके इन मछलियों की सब्जी बनाएंगे।

ये लड़की एक्ससाइज कर रही हैं और मकान हरा भरा दिख रही है और बर्तन भी इधर रखी रही है और बहोत बढिया लगती है देखने में।

चित्र में हमें दो मेंम दिखाई दे रही हैं और कुछ छोटे से बच्चे हैं जो की निचे एक पंगटी पर बेठे हुवे हैं।